उसके बाद एक घर है उसके बाद एक--

उसके बाद एक बिल्डिंग है उसके बाद एक फूल के गाछ है उसके बाद एक खंभा है उसके बाद एक ब्रिज है।

नारियल के गाछ है फिर पलेट है बत्ती है--